ऊपर में आई.सी.यू. के बेड लगे हुए है और आगे गेट --

अपना काम कर रहे है यहाँ पर एक स्कूटर है स्कूटर में दो जेंट्स बैठे हुए है ।

यहाँ पे ये जेंट्स है जो की झंडा फहराने के लिए रंगोली बना रहे है।